रक्षाबंधन में राखी बंधने वाली दुकान का चित्र है जहां पर अलग अलग राखी रस्सी पर लटकाई हुई है।

इस चित्र में पीले रंग का एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

बच्चों के पीछे बहोत घना जंगल जैसा दिख रहा हैं।

कुछ बड़े कुछ छोटे कुछ चौड़े दिख रहे है।

एक औरत ने साड़ी पेहनी है एक औरत ने ड्रेस पहना है।

एक आदमी के एक आदमी के हाथ में पेपर भी है।

लाइट आ रही है सफेद रंग का दिवाल भी है।

यह एक जंगल का चित्र है जहां पर बहोत सारे बड़े पत्थर रखे हुए हैं।

यह घने बादलों वाला एक चित्र है।

उसके बगल में एक और नाव रखी हुई है जो तट से बांधी गई है।

यह एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

ये एक श्री द्वारिका प्राथमिक शाला मॉडल स्कूल है।

पिज्जा के ऑफ़र के पोस्टर लगे हुए हैं।

लाइट है पंखा है ऐ_सी है और बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं।

जहां पर सैमसंग के मोबाइल सोनी के टी_वी सब मिल रहे हैं।

डैम के सारे दरवाजे खुले होने के कारण पानी पूरे फोर्स से नीचे गिर रहा है।

इस चित्र में दो गुम्बारे बने हुए हैं बैठने के लिए --

छोटे छोटे नारियल के झाड़ पौधे लगे हुए हैं एक बेंच है।

इस चित्र में बहोत सारे रंग बिरंगे चश्मे एक के ऊपर एक सेल्फ पर रखे हुए हैं।

इस चित्र में नारायण फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नामक दुकान है।

जिसमें बहोत सारे फ्रूट रखे हुए है।

इस चित्र में एक बड़ा सा विशाल मैदान दिख रहा है।

डैम के ऊपर पीले रंग से छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं।

इस चित्र में एक ऑफिस का टेबल दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर बहुत सारी बुक रखी है पेन रखी है।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

दुकान में बहुत सारी केक की सामग्री रखी हुई है।

चित्र में बहोत सारी गाड़ियां लोग दिखाई दे रहे हैं।

कुछ औरते हैं एक आदमी काम कर रहा है।

अलग अलग रंग बिरंग के झाड़ लगे हुए हैं टाइल्स भी लगी हुई--

मंदिर के ऊपर ध्वजा दिख रहा है और बारिश का मौसम लग रहा है।

यह एक सब्जी मंडी का चित्र है।

दुकान के बाहर कैरेट में बहोत सारे हरे आम रखे हुए है।

इस दुकान में बहुत से आदमी औरतें हैं।

जिसमें दो तीन आदमी स्विमिंग कर रहे हैं।